पीछे जूस की बॉटल्स रखी है।

मेज पर दो तीन बहोत सारी चीज़ें रखी है।

दो डस्टबिन दिख रही है।

यहां पे कांच के गेट दिखाई दे रहे हैं जो--

यहां पे ए टेबल में के कांच के अंदर चश्मे रखे हुए है।

वहां पे एक जूस कॉर्नर में टेबल लगी हुई है।

यहां पे बहोत सुंदर पर लकड़ी के दरवाजे वगैरा बनाए हुए--

खिलौने और प्लास्टिक के सामान की दुकान लग रही है।

यहां इस्लेन कंप्यूटर भी लिखा हुआ--

ये कोई दांतों का क्लीनिक लग रहा है।

इसकी टाइमिंग दो से छह पी_एम लिखी हुई है।

यहां पे बहुत सारे ग गमले र टंगे हुए--

इ इस ग्राउंड में छोटी छोटी हरी घास है।

यहां पे इसके पीछे बिल्डिंग भी बनी हुई--

यहां पे पेड़ दिख रहा है।

इस जो ये जिसपे ये टिकियों का कलर ऑरेंज --

पीछे किसी चीज के बैनर लग रहे हैं इस मूर्ति के ऊपर एक छतरी लगी हुई है।

आ इसके सामने एक वॉश बेसन भी दिखा--

पेगम हैंड वॉश भी रखा है नीचे पोछा मारने का--

यह का यहां पे कश्मीरी एप्पल वगैरा सभी चीजे रखी--

टिंडा साफ दिखाई दे रहे हैं।

मेज है काउंटर वाउंटर भी लगे हुए है।

आगे एक बुक रखी हुई है उस--